येजो न दुकान है बहोत सारे सामान से भरी हुई है और नारे सामने दो कुड्सिया लगी हुई है।

और आप देख सकते है ये जो कुदसिया है इनके समाने जो टेबल लगा वो--

दबा हुआ है और खिडकिय भी लगी हुई है जो दीवारों का रंग है वो--

इस में हम एक छत की तस्वीर देख रहे है जहा पर कोई सोलर सिस्टम यानि सोर उर्जा के लिए ये सिट है यानी--

कई लोग ऐसे ही सो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपने बिजली का खर्चा बचाते हैं और बिजली उत्पन्न करते हैं।

बहोत सारे लोग इसको अटेंड यानी इसको प्रॉ करने के लिए अरे शामील होने के लिए आये हैं।

इनमे महिलाये पुरुष और बच्चे सब है हम देख सकते है लाल कलर की कुड्सियो पर--

और हमको बैंक भी नजर आ रहा है एक्सेस बैंक का ए_टी_ऍम है और साथ में एक्सेस बैंक का ए_टी_एम भी बना है आंध्र बैंक भी बना हुआ है।

ये तस्वीर एक पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी की तस्वीर है जहा पर लोग अपने मन की पसंद की विषय की पुस्तके पड़ने के लिए आते है।

यहा आपको बिलकुल सन्ति में मिलेगी यानी यहा के बिलकुल शोर और हल्ला नही होता है।

बाकि जो पप पड़ने के लिए जो लोग आ रहे है वो आरम से पड़ सके बिना किसी शोर--

ये और यहा पे आपको हर विषय पे पुस्तक उपलभ हो जाती है यानी जो भी स्कूल यापे पड़ने के लिए--

यहा हम एक चर्च की तस्वीर देख रहे है चर्च में हमारे सामने कागरी और बोहोत एक नन बेठी हुई है और सामने--

प्रतिमा भी नजर आ रही है ये चर्च काफी खुल्द और हवादार है।

यहाँ पर खड्किया भी बनी हुई है और चर्च की जो दीवारे है वो सफ़ेद कलर से पेंट की गयी है।

यहा पर छोटे बड़े सब साइज़ के टंको टायर नज़र आ रहे हैं जैसे कार के टायर या ट्रक वग़ैरा के टायर ।

छोटे बड़े आकर की टा टायर की जो दुकान है ये भी काफी बड़ी यानी मिशाल है।

और लेटर ब्लॉक्स पे क्लेयरेंस लिखी हुई है यानी इसको ल यहाँ पर हम चिट्ठियाँ डालते हैं।

ग्रे कलर का रखा गया है और जो टेबल है उसको यलो कलर याने पीले कलर का रखा गया है और यहाँ पर दीवारो --

जो बच्चा है वो एक साल का हो गया है इसलिए उसको सेलिब्रेट यानी मनाया जा रहा है।

और बच्चे के जो माता पिता है और भी रिस्तेदार हैं वो भी उसके आस-पास खड़े हैं और ब वैसे तो बहुत सुन्दर गुब्बारों से --

और यहाँ पर हमको ए बहोत सारी पतंगे नज़र आ रही हैं जो किसी दुकान में बिकने के लिए लगाई गयी हैं।

और प्रतियोगिता करते हैं की किसकी पतंग कहाँ सबसे जादा उड़ाई उच उड़ान भर सकती है।

यहाँ किसी कार्यकरम को करने के लिए सजावट की जा रही है देख सकते हैं यहाँ पर लग बिरंगे अल पर्दों को इस्तेमाल किया गया है किसी हाल --

सजाया गया है और पीले केसरी और नीले और उम सफेद कलर के पर्दों का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर आपको सीढ़ी नजर आ रही है ताकि हम--

देए गए चित्र में हमें एक सड़क नजर आ रही है सड़क के आस पास हमको बड़ी बड़ी दुकानें नज़र आ रही हैं और सीढ़ियाँ हैं हमारे आँखो के सामने --

चार तकिया रखी हुई है दो कम्बल रखे हुए हैं और बिस्तर के सामने ही खिड़कियाँ बनी हुई हैं और खिड़कियाँ खुली हुई हैं।

एक दृश्य चश्मों की दुकान का दृश्य है यहाँ पर हम सामने शोरूम में--

अलग अलग ए नंबर के यहाँ पर हम देख सकते हैं डिज़ाइनर चश्मे भी हैं।

ग्रे और ब्लू कलर यानि स तीन रंगों की कुर्सियों को कॉम्बिनेशन लगाया गया है।

दिए गए चित्र में हम एक पेट्रोल पम्प का चित्र देख रहे हैं जहाँ पर वो लोग अपनी गाड़ियों में पेट्रोल अपने पे भरवा रहे हैं ताकि गाड़ी उनकी चल सके।

ये गाड़याँ आजकल की जो होती हैं वो बिना पेट्रोल के नहीं चलती हैं।

यानि आधा चित्र नज़र आ रहा है पैरो का जिन्होंने उसमें एक पैंट पहेन राखी है चप्पल पहेन रखी है और उसके सामने--

यहाँ हमे हर आकार के टायर उपलब्ध हो जाएंगे हर तरह के यहाँ पर टायर उपलब्ध हो जाएंगे हमारे सामने चित्र में हम देख भी सकते हैं हर साइज़ के यहाँ --

इस चित्र में हमें दुकान देख रहे हैं जोकि टॉफी गोली की है यानी यहां पर बच्चों की चाय अ छोटे मोटे सामान मिल जाते हैं और चाय भी बन मिलती है।

इस चित्र में हम देख रहे हैं ये एक चश्मों की दुकान है और ए जो काउंटर है रेसेप्सनिष्ट वह काउंटर जहाँ पर दुकानदार बेठ कर हिसाब-किताब कर रहा है।

और हम शो सामने काउंटर पे शोरूम में हम चश्मे भी लगे हुए देख रहे है।

हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे चश्मे आप देख सकते है बहोत --

इसमें चित्र में हम देख सकते हैं शाम होने वाली है।

और बहोत सारे रंग-बिरंगे कलर इसमें इस्तेमाल किये गये हैं जो बच्चों को बहोत जादा भाते हैं।

और बहुत ही ध्यान से इस्तिमा फ़िट किया जाएगा तभी ये चल पाएगी और हम देख सकते हैं यहाँ पर तो--